और अगल और एक सी सीढ़ियां भी बनी हुई है और सामने कांच का गेट लगा हुआ है अगल बगल भी मकाने बनी हुई है बादल नी --

और अगल-बगल दीवारे है ऊपर लाइट भी लगी है।

और बड़ा सा मैदान हैं जिस मैदान मैं हरी घांस जमी है बोहत सारी गाड़ियां कारें खड़ी हैं और कुछ लोग भी खड़े हुये हैं।

अगल- बगल हरे-भरे पेड़ पौधे है बादल सफेद है।

एक स्टेशनरी की दुकान है जिस स्टेशनरी में पूरे फूलों और--

एक रास्ता हैं जो रास्ते में लाल कलर की कार खड़ी हुई है उसके अगल बगल कुछ भी कुछ साइकिले खड़ी हुई है।

और सामने एक लड़की खड़ी हुई है ऊपर पंखे लगे हुए है और लाइटें लगी हुई है ऐसीयां लगी है।

ये बड़ा सा बिल्डिंग बना हुआ है जिस बिल्डिंग के सामने ये रास्ते है जो आने जाने के और उसके अगल-बगल कुछ फूल और फूल लगी हुई पेड़ पोधे है बादल नीले है।

और बगल से एक ऑटो खड़ी हुई है और अगल बगल दुकानें भी लगी हुई है हरे भरे पेड़ पौधे भी है बादल हल्के नीले--

एक ए क अगल बगल गार्डन बने हुए है।